गाड़ी का नंबर है बी आर जीरो सिक्स पी एफ वन जीरो टू थ्री ।

पूरा आदमी यहां काम कर रहे है और साइड में एक एलवेस्टर का हाउस बना हुआ --